ये रूम है अलमारी है बेड है ।

भैंसा भी है भैंसा का बच्चा भी है।

पानी है । बहुत पानी है । सफ़ेद पानी है । दो तीन तला घर बना हुआ है बिल्डिंग टाइप का और साइड में --

पौधा सब उम्म उत्पन्न किया जाता है रखा हुआ है बोहोत सारा पौधा है।

अच्छा दिख रहा है पौधा सब ।